और इसमें बहोत सारी खिड़कियाँए भी दिखाई दे रही हैं और एक गेट दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारी सब्जियां रखी हुई है इनमें से कुछ केले दिखाई दे रहे हैं जो कि येलो कलर के है।

इस इमेज में मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा है जो व्हाइ--

में कुछ फूले भी दिखाई दे रही है जो येलो कलर की है और रेड कलर की है और एक चेयर दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का--

इस इमेज में मुझे बहोत सारी बाईकें दिखाई दे रही है जो ब्लैक कलर की है।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

कारें दिखाई दे रही है जो मिट्टी कलर की है और कुछ बॉक्स दिखाई दे रही है।